इस इमेज में हमें सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं और गेट के अंदर अं घंटा भी नजर आ रहा हैं।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है सामने यहां पर दो दरवाजे ओर पेड़ भी नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर काफी सारी टेबल कुर्सी नजर आ रहे हैं जिन पर लोग बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिएगा कुर्सी और दीवाल पर एक्स कोर फिटनेस लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर तीन चार बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा नीचे दो तीन लोग भी नजर आ रहे है।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

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर दो तीन कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने हमें यहां पर एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिएगा एक लड़का भी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा सामने हमें यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा नकली डायनासोर बना हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा हमें सामने यहां पर रोड दिखाई दे रही है और यहां पर कई सारे दुकाने भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर सामने ढेर सारे काले अंगूर दिखाई दे रहे हैं जो बहोत ही टेस्टी लग रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और यहां पर देखीयेगा एक व्यक्ति नहाता हुआ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा हमें यहां पर एक झरना दिखाई दे रहा है पानी का यहां पर कुछ लोग बैठे हुए इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर एक धर्मशाला दिखाई दे रही है और गेट के पास में एक बेंच भी रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने देखिएगा हमें यहां पर एक आइसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है और ऊपर पंडित कुल्फी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमें यहां पर एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारी बैठने की बेंचेज रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर सामने देखियेगा हमें डाकघर दिखाई दे रहा है और यहां पर जाली का गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर एक डॉक्टर का केबिन दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी और बी_पी अ चेकर मशीन रखी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखेगा हमें यहां पर कुछ गेंदे के पौधे दिखाई दे रहे हैं और जिनमे फुल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर दूल्हा दुल्हन खड़े हुए नजर आ रहे हैं।